इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि बोहोत सारे बच्चे नीचे बैठे हुए अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उन पे एक टीचर --

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं की टेबल्स पर बोहत सारी प्रोजेक्ट की चीजें रखी हुई हैं और एक बच्चा उन्हे अपने टेबल्स पे लगा रहे हैं।

इस तस्वीर से हम देख पा रहे है कि यह तस्वीर एक स्कूल की कॉरिडोर की है जिसमें बच्चे अपने प्रोजेक्ट को सजा रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें यह दिखाई दे रहा है कि बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट एक टेबल पे रखे हुए है ।

और उन्हे वो बहुत सारी चीजों से सजा रहे है और एक नान उन्हे देख रही हैं।

वहां आग से लथपथ मसाले हैं।

और वह एक ग्रीन कलर के टी-शर्ट की टीम हैं और एक वाइट कलर की टी-शर्ट में टीम है।

और कुछ लोग उन्हे तोड़ रहे हैं और उनके पीछे हमें बोहोत सारे पड़े पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ।

इस चित्र में हमें यह दिख रहा है कि यह एक गैरेज की फोटो है। जिसमे उन्होंने एक गाड़ी को ऊपर किया हुआ है।

और यह खराब हो चुकी हैएक आदमी ने उसे रस्सी से बांधा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें दो मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं और वह मूर्तियाँ बोहोत ही सुन्दर हैं।

और बहुत सारे लोग राउंड बना के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उसके नीचे बहुत सारे दुकान लगे हुए दिखाई दे रहे। उसपे से एक पे ताज ऑप्टिकल एंड को लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।